और यहाँ पर लोग आकर होली खेलते है ये दोस्त लग रहे हैं पक्के वाले।

यहाँ पर बोहोत सारे लोग अपने बच्चों को ये सब सीखने भेजते हैं और वो कामियाब भी होते है और ये फ़ीस भी बोहोत ही कम लेते --

यहाँ पर लोग पूजा के लिए सामान भी लेकर आते है और फल वगेरा भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पूजा होती है।